ये एक नाई की दुकान है इसके अन्दर आदमी है शीशा है और ग्रीन कलर का --

तरबूज़ कुछ सेब और कुछ नीबू रखे हुए हैं और यहाँ कुछ लोग भी खड़े हुए हैं।

यह एक पार्क है इसमें कुछ बच्चो के खिलौने हैं।

इसमें रेड कलर के यलो कलर के और पीले क पिंक कलर के फूल लगे हुए हैं और उसके पीछे ब्लू कलर के ग्रिल है।

सब्जी मंडी है | यहाँ पर कुछ सब्जियां रखी हुई है | गाजर मुली और सब खीरे तोरी अ शिमला मिर्च हरी प्याज़ गाजर --